यह एक स्टोर है जिसमें बहुत सारी कूलर है बड़ी छोटी और सामने वाली दुकानों में दुकान है जिसमें एक मे लिखा है --

इस फोटो में ड्रिल बैग दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में ऊपर का आसमान दिखाई दे रहा है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है गमला दिखाई दे रहा है।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है बड़ा सा नाम दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट का साइड में लाइटें चालू है थोडा धुंधलाई आई हुई है।

कुछ लोग डांस कर रहे हैं कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं कुछ आदमी डांस कर रहे हैं लड़कियों के साड़ी पहनी हुई है ऊपर कलर उड़ाया गया है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारी साइकिल दिखाई दे रही है साइड में आसमान दिखाई दे रहा है।

एक स्टोर दिखाई दे रहा है उस पर चेयर्स रखी हुई है कुछ फोटोज रखी हुई है टेडी बियर रखे हुए हैं कुछ --

बच्चे पढ़ाई कर रहे दिखाई दे रहे हैं कुछ नोट्स लगाए गए हैं कुछ नोट करके लिखाया गया।

बहुत बड़ा आसमान दिखाई दे रहे हैं नीचे सड़क दिखाई दे रही है एक बंदा चलता हुआ दिखाई दे रहा है साइड में बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बैठने के लिए गद्दा दिखाई दे रहा है दरवाजे खुले दिखाई दे रहे है एक घड़ी दिखाई दे रही है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है साइड की दीवार दिखाई दे रही है।

बहोत सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे जमीन दिख रही है थोड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है पास में बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे री है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है नीचे की ज़मीन दिखाई दे री है।

उसके बाहर अ बाउंड्री है ऊपर आसमान है आसमान में बादल है थोड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा --

बाहर तीन मोटरसाइकिलें खड़ी है उसके पास में एक बंदा खड़ा है नीचे की जमीन दिखाई दे रही है खिड़कियां दिखाई दे रही है कांच के शीशे दिखाई दे रहे है।

जमीन का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ऊपर का आसमान दिखाई दे रहा है एक बन्दा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग पौधे दिखाई दे रहे है।

टायर दिखाई दे रहे हैं नीचे की जमीन दिखाई दे रही है ऊपर का आसमान दिखाई दे रहा है पास में बैठा आदमी दिखाई दे रहा पास में रखी बाल्टी दिखाई दे रही --

स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है बहुत सी लेडिस दिखाई दे रही है ऊपर छपरा सा लगा हुआ टेंट लगा हुआ है कुछ फर्श दिखाई दे रहे --